इस इमेज में हमें ढ़ेर सारी कुर्सियाँ दिखाई दे रही है बेंच जैसा लकड़ी का बेंच है।

मछलियाँ ढ़ेर सारी दिख रही है ढ़ेर सारे आदमी लोग भी इस शॉप पर है।

और ऊपर रेड कलर का टोपी लगायी हुई है नीचे हरे और लाल कलर के पट्टी पर खड़ी है।